और दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। जिनपे आग लगे हुए हैं।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

अंदर कुछ चम्मच जैसे दिखाई दे रही है एक सॉस की बॉटल दिखाई दे रही है मुझे ये कोई होटल लग रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ अनाज की कट्टे दिखाई दे रहे हैं कट्टों के अंदर अनाज लग रहा है मुझे पास में ही कुछ --

इस तस्वीर में मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और मुझे पंखा दिखाई दे रहा है।

और ये सामाजिक स्थान बीकानेर एक इस तरह का पोस्टर दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग पे लोह का गेट दिखाई दे रहा --

कुछ टेबलें दिखाई दे रही है जो लकड़ी की बनी हुई है कुछ कुर्सीएं भी दिखाई दे रही है वो भी लकड़ी की बनी हुई है।

इसके हाथ मे ही फोन दिखाई दे रहा है और कुछ जिम का समान दिखाई दे रहा है।

इनके आगे मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक सरस्वती माता की तस्वीर दिखाई दे रही है कुछ मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही हैं।

मुर्तियाँ और दिखाई दे रही है एक पीतल का टोकना दिखायी दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो सैलून की दुकान के अंदर हैं हेयर कट करवा रहे हैं।